दो ही फ्लोर्स हमे दिख रहे हैं जिसमें की ब्लैक एंड व्हाइट कलर का कंट्रास्ट भी दिख रहा है।

ध्यान आकर्षित कर रहीं हैं ओवरऑल इस बिल्डिंग का कलर बहोत खूबसूरत हैं।

बहोत सारी खिड़कियां भी इसमें देखने को मिल रही है और साइड में एक कार का थोड़ा सा व्यू भी।

इस पिक्चर में सबसे पहले नोटिस होने वाली चीज जो मुझे लगी वो है इसका ब्ल्यू रेडियन सा कलर ।

कुकीज और आइसक्रीम का रेफ्रिजरेटर भी इस फ्रेम में दिख रहा है और ये फ्रेम थोड़ा सा अनइवन सा मुझे लग रहा है।

ये पिक्चर एक टेंपल की पिक्चर है जो कि मे बि अंडर कंस्ट्रक्शन है या फिर रेनोवेशन इसकी हो रही हैं।

और ब साथ ही में बाहर का व्यू भी इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं काफी सारी विंडोज हैं।

ये पिक्चर मेबी साउथ के किसी म्यूजिकल फेस्ट की पिक्चर है या फिर किसी स्कूल के फंक्शन की पिक्चर ।

बहोत सारी चीजें और साथ ही बैकग्राउंड में थोड़ी सी बॉटल्स भी दिख रही है।

ये जो पिक्चर है ये इवनिंग व्यू की है शिमला मॉल की--

ये एक पिक्चर है आर्ट गैलरी की जो की शिमला में ही सिचुएटेड है।